एक पीले कलर का अम् बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। पेड़ दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे।

बगल में मकान बना हुआ है और मेन गेट है जिसका कलर काला कलर दिखाई दे रहा है। लाइट के तार दिख रहे हैं। पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और यहाँ पे एक ग्रे कलर की कार खड़ी हुई है।